और यहां दूसरी साइड में दो औरते मछली खरीद रही हैं और काफी अच्छे अच्छे मछलियां दिख रहा है और बोहोत ही अच्छा अच्छा मछलियां हैं।

उसके ही बगल में एक आदमी और उसके पीछे तीन कुर्सियां है और काफी अच्छा दुकान दिख रहा है अभी दुकान पूरा बना नहीं है।

यह एक फूल मंडी का फोटो है जिसमें काफी सारे फूल रंग बिरंग के रखे हुए है जैसा कि देख सकते है कि एक लाल रंग का है पीले रंग का है और व्हाइट रंग का भी है।

और टी_शर्ट का रंग ही कुछ अच्छा है और बहोत ही मस्त जैसा दिख रहा है और कोट वोट इसमें रख हुआ है बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें--

इस फोटो में काफी सारे टी शर्ट रखे हुए बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट जैसे कि एक साइड में पूरा ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट हैं और एक साइड में ब्लैक व्हाईट एं--

रेड और ब्लू भी टी-शर्ट है बहुत ही स्टाइलिश स्टाइलिश टीशर्ट है काफी अच्छे-अच्छे उसके ऊपर लाइट रिंग लाइट का भी व्यवस्था है काफी अच्छा-अच्छा फोटो इसमें रखा हुआ है टी शॉर्ट का।

उसके नीचे ही एक वाइट कलर की गाड़ी है। बहुत ही स्मूथ अच्छी कार है उसके बगल में कुर्सी है उसके बगल में ही एक ब्लैक कलर की कार हैं।

यह होटल किशन का फोटो है। जिसका नाम भी होटल किशन है और काफी अच्छे अच्छे पिक्चर बीच में बहोत सारी बाइके रखी हुई है।

एक हजमुल्ला का डिब्बा भी रखा हुआ है नीचे आगे फ्रीज भी है बहुत ही अच्छा पिक्चर है।

एक फोटो तकरीबन शाम की है बहुत ही भीड़भाड़ की जगह है जिससे की कोई बाबा जा रहे हैं बाइक पर या ट्रैक्टर पर इस समय का फोटो है बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ा इसके बगल में ही--

जो कि छोटा-छोटा मछली भी रखे हुए हैं एक साइड में और बड़ा-बड़ा मछली भी है एक साइड में।

फोटो पावर हाउस के जिसमें काफी सारे फोन से और उसके बगल में कुछ ज्यादा ही खंभे अ सब बिजली का ही खंभे और इस फोटो तो साम की--

एक फर्नीचर का दुकान का फोटो जिसमें काफी सारे फर्नीचर सामान रखे हुए जैसे कि ये देख सकते हैं डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल कितना अच्छा दिख रहा है उसके बगल में चार कुर्सी र्है उसके बगल में --

की फोटो जिस पार्क में काफी सारे कुएं टाइप के एक दिख रही है जिसकी चड़का है उसमें पानी भी बहुत ही उसके बगल में काफी सारे पौधे रखे हुए हैं।

मंडी की फोटो है इसमें काफी सारे फूल रखे हुए इसमें देख सकते हैं जैसे कि फूल के माला भी काफी अच्छे अच्छे गुलाब का भी फूल है चमेली का भी फूल है और --

यह फोटो कही के जिम कलब के हे जहां क देख सकते है बौत ही अच्छा-अच्छा चीज इज पर रखी हुई जिम में और एक व्यक्ति यहां पे जिम कोर रहा है जो कि रूमालो है।

और एक डंबल भी यहां पे देख सकते हो बहुत सारी डंबल इसमें रखी गई हैं।

और नीचे काफी गहराई दिख रही है और काफी अच्छे-अच्छे पेड़ पौधे उसका मौसम भी काफी सुना लग रहा है कि बारिश का मौसम है तकरीबन इस--

यह फोटो तकरीबन छत की ऊंचाई से खींची गई है और काफी सारी इसमें पिक्चर दिखाई जा रही है नीचे बहुत सारी इसमें बाइकें रखी गई है और इस बाइक को काफी अच्छा अच्छा दिख रहा है पेड़ पौधे भी काफी है।